और इसमे बेंच भी बिछी हुई है और--

और इसमें बहुत सारा घास भी खड़ा हुआ है।

और इसमें पेड़ पौधे भी बोहोत से लगे हुए हैं।

ये एक सत्संग है इसमें बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई है।

और इसमें पेड़ भी पौधे भी लगे हुए हैं।

और इसमें फिटिंग भी रख लगी हुई।

और इसमें कलर भी हुआ है और नीचे टेल --

और इसके नीचे टेल भी बिछी हुई है।

यह एक नहर है इसमें पानी चल रहा है।

और इतनी कार भी खड़ी हुई है।